देख सकते हैं की एक टोकरी है। टोकरी में अनेकों प्रकार की टमाटर है जो की ओनली वो टमाटर ही है। इसमें कलर ही अलग-अलग है जैसे आप देख सकते हैं रेड है थोड़ा सा येल्लो है उससे ज्यादा भी येल्लो है और उससे ज्यादा रेड है।